अपने हाथ में फोन भी धरा हुआ हैं और कपड़ा पहना है जो कि कपड़े का कलर है ब्लू ।

सब बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं जैसी की ब्राउन हल्का ग्रे और ब्लू कलर का।

उसके पीछे बहुत सारे व्हाइट व्हाइट घर दिख रहे है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है जोकि बहुत ही लंबा और चौड़ा बिल्डिंग है।

में कई तरह के खिड़की भी लगे हैं जो कि बहुत सारे हैं।

यह एक बॉक्स का दृश्य है।

यह एक व्यक्ति का दृश्य है जो की फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं।

पीछे ब्रिज बना है जो कि ब्रिज का कलर है रेड व्हाइट एंड पीला और आसमानी कलर दिख रहा है।

पीछे में एक गेट है जो कि वो भी सीसे का है।

तथा इसके चैन भी है जो की ब्लैक कलर के हैं।

कई प्रकार के कपड़े पाए जाते हैं और यहां पर सिलाई भी जाते हैं।

ऊपर में पोस्टर बैनर लगा हुआ है जोकि वरुथ लिखा है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है।

उसका कान भी है जो कि ब्राउन कलर का और बड़ा है।

यह एक पानी का दृश्य।

पोल भी है जोकि पोल पे बहुत सारे तार जा रहे हैं।

यह एक सी_डी हाईवेयर दुकान का दृश्य है।

यह एक बाइक सर्विस दुकान के अंदर का दृश्य है।

नीचे टाइल्स मार्बल की मदद से लगे हुए हैं।

यह एक कार का दृश्य है जो कि एक व्यक्ति है जो कार को सही कर रहे--